यह सामने से दिखाई दे रहा किसी दुकान का एक रेग है जो एक बेकरी सोप की दुकान लग रही है। जेसा की हम बगल में ढेर सारे केंडल्स रखा देख पा रहे होंगे मोमबत्ती--

जैसा की अनुमान होता है इसके ऊपर एक बड़ा सा गुम्बद इसे हरे रंग से रंगा गया है इससे साफ सिद्ध होता है यह एक मस्जिद है।

यह तस्वीर एस.बी.आई. ए.टी.एम. और ऊपर में एस.बी.आई. बैंक की है। ऊपर भारतीय स्टेट बैंक जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसके नीचे ठीक भारतीय स्टेट बैंक का ए.टी.एम. मौजूद --

ये एक बाइक सवार द्वारा लिया गया तस्वीर है जैसा कि आप देख रहे होंगे बाइक का एक शीशा साफ-साफ दिखाई दे रहा है सामने की ओर एक साइड ए.आर. एंटरप्राइजेज वगैरा लिखा दिख रहा है और सामने की ओर --

ये न्यू उपयोग में आने वाला होटल है जिसमे सामने काफी अच्छा व्यवस्था और गार्डेन भी है। --